ऊपर का आसमान भी दिखाई दे रहा--

कई सारे बास्केट भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने में एक आदमी भी दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर मे पिंक कलर का बिल्डिंग दिख रहा आस पास कई सारे लोग दिख रहा।

और कई सारे बोर्ड भी दिखाई दे रहे--

सामने में कई सारे प्लेट भी दिखाई दे रहे हैं और कई सारे चम्मच भी दिखाई दे रहे हैं।

और ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के ऊपर फर्स्ट चॉइस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और सामने में एक खेत भी दिखाई दे रहा है।

साथ में एक वॉल क्लॉक दिखाई गई है।

मुझे तस्वीर में बहुत सारे बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।

और बहुत सारा घास का छाया भी दिखाई दे रहा हैं।

मुझे इस तस्वीर मे बहोत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही--

ब्लू कलर कपड़ा सब भी दिखाई दे रहा--

और आस पास कई सारे घास फूस भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने में एक डस्टबिन भी दिखाई दे रही है --

सामने में एक औरत और एक आदमी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के दीवार भी दिखाई दे रहे--